वो शटर है जो भूरे रंग का है यहां पे एक पंखा लगा हुआ है।

यहाँ पे बहोत सारे फल रखे हुए हैं जैसे केला अनार सेब अंगूर संतरा।

ए_सी छपी हुई है यहां पे कुछ वॉशिंग मशीन भी रखी हुई है।